जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं एक खाली सा मैदान दिखाई दे रहा है।

लेके जा रहे हैं किसी घर के बाहर से और बहुत सारे टाइल्स और भी पास में रहते हैं जो --

के ऊपर टेबल के ऊपर चेयर के ऊपर बेंच भी बना हुआ है जहां पे कॉपी रख के अच्छे से लिख सकते हैं और एक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

बड़े-बड़े टब रखे जिस पे बी_एस_पी लिखा है एक अंटी साड़ी में खड़ी बैठी हुई है वहीं पे।

वहां पे कम बहुत सारे खारी तोस ये सब लगा हुआ है यहां पे --

कुछ बच्चे से दिख रहे जो फोटो क्लिक कर रहे और कुछ आंटिया बैठी हुई हैं वहां पे।

हरी हरी पत्तियां लगाई दे रही है और कुछ कांटे भी दिखाई दे रहे हैं जो चुभने वाले हैं।

जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं गरा भरा बगीचा दिखाई दे रहा है जहां पे --

बहुत बड़े-बड़े पैड दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी सिर्फ पत्तियां दिखाई दे रही है।

और ऊपर लाइट्स लगी हुई है बहुत तरीके के अच्छा सा इंटीरियर करा हुआ है।

कुछ पहना हुआ हो जिस ताकि सीमेंट ना लगे और ऐसा लग रहा है जैसे छत ढल रही हो।

एक ने चप्पल पहना है और एक ने बूट्स टाइप कुछ पहना है वहां पे लकड़ियां र --

जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं एक हरे कलर का गेट लगा हुआ है।

जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मूर्ति बनी हुई है जो एक अलग ही वे में ओलंपिक टाइप जैसा दिख रहा है।

जो मेटल की दिखाई दे रही है पीछे बिल्डिंग बनी हुई जो हर बिल्डिंग प विंडो बनी हुई है और हर एक विंडो पे ए_सी लगी हुई है।